सोना तौल कर ये चांदी तौल के दिया जाता है।

यहाँ पर जय सतनाम लिखा है और ये पूरे सफेद रंग की दीवाल है यहाँ पे एक रूम है।